यह तस्वीर में मुझे कुछ लोग दिखाई दे सकते है ये लोग मुझे मेट के ऊपर खड़े हुए दिखाई सकते है मेट का कलर मुझे रेड दिखाई दे रहा है पीछे देखने पर आसमान दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ तस्वीर में मुझे एक स्कूल दिखाई दे रहा है स्कूल में मुझे बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर मे मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है ये पेड़ मुझे सेव फल का दिखाई दे रहा है जहाँ पे मुझे ताजे-ताजे सेव फल लगे हुए दिखाई दे रहे--

यह तस्वीर में मुझे एक मॉल दिखाई दे रहा है मॉल के अंदर की यह तस्वीर दिखाई दे रही है जो की एक छोटा-सा सेक्टर दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे कुछ स्वीट्स और नमकीन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मुझे केश्यू भी दिखाई दे सकते हैं।

यहाँ पर मुझे कुछ गाड़ी भी पार्क करे हुए दिखाई दे रही है और एक कार भी दि--

बीच में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है घर का कलर मुझे अ-ब्राउन दिखाई दे रहा है पीछे कि ओर देखने पर यहाँ पर मुझे आसमान दिखाई दे रहा है।